ये पारक मुझे बहोत बड़ी दिखाई दे रही है।

मुझे कुछ बाइक भी दिख रही है मुझे कुछ काफी बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे बहोत बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे--

जो दुकानों से सामान वगैरा खरीद रहे हैं।

नर्सरी के बाहर एक लेडिस भी आ रही है।

मुझे कुछ यहां पे बैठने के लिए दिखाई दे रहा है।

एक्टिवा बड़ी ही अच्छी लग रही है और लाइटें भी लगी हुई है।

मुझे मुझे यहाँ पे शीशे भी दिखाइ दे रहे है मुझे कुछ कुर्सी भी दिखाइ दे रही है।

बिल्डिंग भी लगी हुई है मुझे बाहर एक पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

वो बहुत ही ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा हैं जिसके बाहर कुछ--

बोर्ड भी दिखाई दे रहे हैं। पेड़ बहुत ही ज्यादा बड़ा दिखाई दे रही हैं और बहुत बड़ा है।

मुझे कुछ यहां पे योगा सेंटर दिखाई दे रहा है।

मुझे कुछ यहां पर पानी दिखाई दे रहा है।